यहां कुछ लड़कियां डांस करते दिखाई दे रही है जिन्होंने रंगबिरंगे कपड़े पहने हुए--

आसमान दिख रहा है.

दे रही है और कुछ लोग दिखाई--

दे रहे है जिनके चेहरे पर ब्लर दिखाई--

ब्लैक दिखाई दे रहा है एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ कचरा दिखाई--

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है.

दे रही है पीछे बहुत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है.

है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

यहां एक गली दिखाई--

और कुछ लाइट्स दिखाई --

दे रही हैं एक दुकानदार दिखाई--

यह एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत से--

क्रीम के डब्बे दिखाई दे रहे--

यहां कुछ गुलदस्ते दिखाई--

एक चेयर दिखाई दे रही--

और कुछ गमले दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ कपड़े दिखाई दे रहे--

दे रहे है लाइट्स दिखाई दे रही है।

दे रही हैं लाइट्स दिख रही हैं।

दे रहे हैं कुछ घर दिखाई दे रहे हैं.

है कुछ पेड़-पौधे दिखाए --

यह कुछ ग्राउंड दिखाई दे रहा है.

दे रहा है और कुछ कॉपी किताबें दिखाए --

कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं एक--